सामने एक दुकान दिख रहा है उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ दिख रहा है जिस पर ओके इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है।

सामने एक दुकान जैसा दिख रहा है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है एस.बी.आई उसके नीचे एक छोटा -सा बोर्ड लगा हुआ हैं।

सैनिटाइजिंग चैंबर और उसका दरवाजा ग्रीन कलर का है उसके अंदर ग्रील लगा हुआ हैं।

सामने एक नदी दिख रही है नदी के बीचो-बीच एक पूल जैसा बनाया है जिसमें बहोत सारा आदमी औरत आ जा रहै है कुछ बाइक से तो कुछ पैदल--

सामने में एक मैदान जैसा दिख रहा है जिस पर हरा कलर का मैट बिछा हुआ है और उसके सामने दो तो टेंपो लगा हुआ है।

और उसके पीछे बहुत सारा बालू रखा गया है और कुछ वर्कर्स भी है जो काम कर रहै हैं।

और फिर बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहै हैं और सामने में एक झरना जैसा दिख रहा है जिससे पानी भी गिर रहा है।

सामने में एक दुकान दिख रहा है बड़ा सा जिसका नाम है शरद सौरभ और उसपे बहुत सारी लाइट भी लगे हुई है।

सामने में एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में बहुत सारे लड़के भी है और कुछ लड़के स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं।

सामने में एक छोटा घर जैसा दिख रहा है इस पर लिखा हुआ नगर पालिका निगम कोबरा--

और वो पीले रंग का है और उसमें ग्रिल लगा हुआ है ब्राउन कलर का उसके बगल में कुछ ब्लैक कलर का लिखा हुआ है पोस्टर जैसा --

सामने में दो बैंक दिख रहा है एक का नाम है एस.बी.आई. दूसरा उसी के बगल में लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक --